ए_टी_एम के ऊपर स्टेट बैंक ए_टी_एम लिखा हुआ है।

दूसरा व्यक्ति ए_टी_ए_म के बाहर खड़े होकर अंत व्यक्ति का निकलने का इंतजार कर रहा है।

इसके पीछे एक डिजाइन दार--

नीचे के लिए बहोत सारे बॉक्सेस पॉलिथिंन्स और--

पास में ही एक सीढ़ी आ गई है जो ऊपर की ओर जाती है।